उसमें कुछ अच्छे चप्पल जूते की दुकान बनी हुई है कुछ गुब्बारे लगे हुए हैं यह एक कूलर भी रखा हुआ है।

दुकाने दिख रही हैं कुछ बोर्ड लगे हुएं हैं।

सीढ़ियां भी हैं और कांच भी लगे हुए --

कुछ पानी भी दिख रहा है तालाब टाइप का।

और दीवाल है एक फोटो भी टंगी बस।

एक खंभा सा गड़ा है और बाजू से बिल्डिंग --

उसमें कुछ ऑफिस बना हुआ दिख रहा है उसके ऊपर कुछ लीड लगी हुई है उसमें कुछ पेड़ पौधे लगे हुए हैं।